ये कोई खेत की फोटो दिख रही खेत वगैरह है यहां पे पूरी बहोत सारी मट्टी है हुई।

बहोत बड़ा खुला है खुली जगह है ये बहोत ही खुली जगह दिख रही--

ये एक किराने की दुकान दिख रही है जहां पे बच्चों के खाने पीने का सामाना मिलते--